यहाँ एक स्टेज पर जोड़ा खड़ा हुआ है तथा वरमाला पहनी हुई --

यहाँ एक स्टेज पर तीन लड़किया डांस कर रही हैं जो अलग अलग स्टेप में खड़ी हैं |

एक व्यक्ति बाल्टी से इसमें कुछ सामान डाल रहा है बगल में दूसरा व्यक्ति सर पर कैप पहने खड़ा है तथा नीचे एक बोरा व बाल्टी रखी हुई है बगल में एक बहोत बड़ा जग रखा हुआ है।

एक स्टेज है जिसपे बहुत सारी औरते खड़ी हैं तथा बीच मे एक व्यक्ति खड़ा हुआ हैं सब के हाथ मे एक गिफ्ट बोक्सेस रखे हुए हैं तथा पीछे एक व्हाइट कलर का पर्दा लगा हुआ --